यहां पर कुछ आर्मी भी खड़े हुए हैं। अलग-अलग कलर के कपड़े पहने हुए है। सुंदर दिख रहे हैं।